यह एक मैकडॉनल्ड्स का कैफे है।

यहां पर मछली रखी गई हैं।

खेतों में हरी भरी सब्जियां उई हुई दिखाई दे रही हैं।

यह एक क्लास रूम की तस्वीर है।

यहां पर कई सारे मेज और बेंच लगे हुए हैं।

एक फिलम थ्री इडियट्स की शूटिंग भी की गई है।

यहां पर लोग खाना खाने बैठे हुए हैं।

तथा एक दूसरे के साथ--

लोग यहां पर दर्शन के लिए आते रहते हैं।

अपने बाल तथा दाढ़ी बनवाने आते हैं।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए--

कई प्रकार के कपड़े मिलते हैं।

कई हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह झूला काफी रंग बिरंगा हैं।

यह लोग इस पर इस झूले--

की सवारी करना चाहते हैं और--

बेंच लगाए गए हैंतथा--

कई पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जैसे देवदार और--

रोशनी के लिए शीशे लगाए गए हैं।

साथ में कोई छोटी गाड़ियां भी चल रही हैं।

यह बहोत ही सुंदर है तथा यहां--

पत्थरों के ऊपर से बहता हुआ--

पीछे की ओर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।